यहाँ पे फुटबॉल है निविया का ऐसे कुछ है और यहाँ बहुत सारे सामान ऊमान भी है । ये पोस्टर में ऐसी भी लगा हुआ है और इधर सब ब्लू ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है।

और ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इसमें टाइल्स उल्स भी लगा हुआ हैजो की व्हाइट कलर का टाइल्स लगाया गया है । इसमें बहोत ही--

और इधर ए सी भी लगा हुआ है इस रूम में जो की बहुत ही बड़ा ऐ_सी लगाया गया है और बहुत ही अच्छा है।

देख सकते है यह मॉल वॉल कुछ बनाया जा रहा है जो की सैटिंग्स वेटिंग लगाया गया है और इसमें शीशा विषा भी लगाया गया है। जो की बहुत बढ़िया शीशा विषा चमकीला लग रहा है।

और ये ग-गेट का कलर ग्रीन है। ये गेट भी देखने मे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये घर भी बहुत सुंद--

और यह ब्रिंजल भी इसको बोलते है की ये देख सकते है आप लोग कितना सारा ब्रिंजल है जो की बहुत अच्छा लग रहा है।

और यहाँ पे देख सकते है स्टार्टिंग पानसो से सातसो रूपया तक का वोलेन में और यह जॅकेट वेकेट है ये ठंडी के लिए जॅकेट वेकेट ख़रीदा जाता है जो की बहुत सारे यहाँ पर जॅकेट वेकेट है जो की अच्छे है ।

और उधर तार वार भी है। तीन चार तार तार घीचा गया है जो की बिजली का उसमे करंट आती है। तभी तो घर में लाइट जलती है बिजली आती है।